इस दृश्य मे मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है और खेत के लास्ट में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत बड़ी है जो पीले रंग--